घर के साइड में हमें एक कार दिख रही है कार का कलर सफेद है।

और यहाँ पर हमें घर के दो विंडोस भी दिख रहे हैं और साइड में हमें उम घर के कुछ कैम भी दिख रहे हैं।

बोर्ड पे हमें लिखा हुआ कुछ दिख रहा है रीटा और जासमीन बोलकर लिखा है वन रुपए जनरल स्टोर के भी लिखा है

यहां पे हमें एक आदमी दिख रहा है जो टकला है और उसने व्हाइट कलर की कमीज़ और नीली कलर की जींस पहनी है।

यहाँ पे हमें पानी दिख रहा है पानी के आंजू-बाजू बहुत अच्छी हरियाली है और हमें यहाँ पे कुछ और पत्ते दिख रहे हैं।

इसमें हमें पानी दिख रहा है पानी के आजू-बाजू पत्थन हैं पत्थर बहुत बड़े-बड़े से हैं और उस पत्थर के साइड में छोटी-छोटी झाड़ हैं छोटी-छोटी झाड़ के सामने हमें बहोत बड़े --

यहां पे हमें दो बाइक दिख रहीं हैं एक बाइक का कलर लाल है दूसरे का ब्लैक है उसके साइड में हमें बहुत सारे चप्पल दिख रहे हैं।

बोर्ड के नीचे का कलर ब्लैक है और ये बोर्ड के साइड में एक पटरी नजर आ रही है पटरी के साइड में हमें कुछ घर नजर आ रहे हैं।

एक घर का कलर है ग्रीन कलर का दूसरे है नेवी ब्लू कलर के उसके विंडोज हैं उसके साइड में लाल कलर का घर है उसके ऊपर नीली कलर की टंग --

यह एक बस स्टैंड है बस स्टैंड के सामने हमें एक दो तीन चार गाड़ियां नजर आ रही हैं और ये सब बसेस हैं।

स्विच बोर्ड दिख रहा है और मीटर भी दिख रहा है और उसके साइड में हमें एक ग्रीन कलर का डोर दिख रहा है उसके सामने हमें--

यहां पे ठहरे हुए कुछ लिखा कर ले रहे हैं और यहां पे हमें एक बड़ी सी दुकान भी दिख रही है और यहां पे बहोत सारे लोग जमा हुए दिख रहे हैं।

यहाँ पे कुछ औरतें भी हैं जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है और नीवी ब्लू कलर के भी कुछ कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं।

औरतों के साड़ी में हमें बहोत सारी गाड़ियां भी नजर आ रही है गाडियां के साइड में हमें साइकल्स भी दिख रहे हैं।

दो विंडो दिख रहे हैं और साथ में ही हमे हिन्दुस्तान ।

गड्ढे के ऊपर में हमें बहोत सारी मिट्टी भी दिख रही है उसके साइड में हमें एक गैलरी दिख रही है जहां पर दो लड़कियां ठहरे हुए दिख रहे हैं।

उनके साथ हमें ईंटा दिख रहे हैं ईंटा के साइड में हमें झाड़ दिख रहे हैं जो बहुत ही मुरझाए गए हैं वहाँ पे हमें येलो कलर का एक बड़ा --

में एक बड़ा से कॉलेज दिख रही है कॉलेज के बोर्ड का नाम है ड--